अभी एक स्कूटी खड़ी है इसमे एक होल्डिंग लगा हुआ है।

इसमे मुझे एक घर का सीन दिख रहा है और घर एक कोने पर एक होल्डिंग लगा हुआ है।